इस फोटो के अंदर आप देख सकते है की बड़ी बहुत बड़ी - बड़ी बिल्डिंगे दिखाई दे रही है यह बिल्डिंगे नीले और पिले रंग की है एक साथ नजर आ रही है।

इस फोटो के अंदर आप देख सकते है कि सामने मेज है मेज के ऊपर लाला कलर का तिरपाल लगा हुआ है तथा उसके ऊपर कई सारी मछलियाँ पड़ रखी हैं।

तार भी दिखाई दे रही है।

जोकि काले रंग की है बंद हुई रखी है तथा बीचो -बिच दीवाल पे बोर्ड लगा हुआ है यह दीवाल का कलर सफ़ेद और नीचे से --

तथा उसके नीचे की ओर एक व्यक्ति खड़ा है जोकि हाफ़ लोवर और हरे रंग की टी _शर्ट पहन रखा है तथा उसके नीचे भी कई पत्थर बड़े -बड़े दिखाई दे रहे हैं ।

छत बना रखी हैं छोटी सी भवन में एक मूर्ति हैं सफ़ेद कलर की तथा भवन के जीने पे ऐंगल पे स्टील तथा चारो ओर बॉउन्ड्री भी दिखाई दे रही हैं।

यह एक खिड़की दिखाई दे रही है एक दरवाजा है एक महिला बैठ रखे है एक चेयर पे दो चेयर है।

और कई बसे नज़र आ रही है एक बस भी दिखाई दे रही हैं जो बिच सड़क पर उसके बगल मे उसके कार भी नज़र आ रही हैं।

कई भवन मंदिर और झंडे उसके ऊपर लगे हुए नजर आ रहे है तथा भवनों के ऊपर तारों का जाल भी दिखाई दे रहा है।

यह फाइल में आप देख सकते हो कि दीवार नजर आ रही है दीवार के बा पास ही एक स्टेबल बना रखा है ऊपर टीन बना रखी हैं।

धलले पे लगा हुआ हैं ज काफी ऊचाई पे नज़र आ रहा है तथा उसके आस-पास रोड तथा कुछ लोग भी दिखाई दे रहै है और चारो तरफ--

काफी हरे -भरे पेड़ -पौधे नजर आ रहॆ है जोकि काफी घने दिखाई दे रहे है ऊपर की ओर खुला बादल से भरा आसमान नजर दिखाई दे रहा हैं |